और ये बहोत अच्छा बना हुआ है चारों तरफ हरियाली है बहोत सारे पेड़ दिख रहे हैं अंबेडकर जी की एक बहोत बड़ी प्रतिमा भी लगी हुई है।

ये एक स्कूल की लॉबी लग रही है जिसमें गमले रखे हुए हैं। गमले में अलग-अलग तरीके के पौधे लगे हुए हैं।

बच्चों के खेलने के लिए इसमें एक खीसल पट्टी भी रखी हुई है।

नर्सरी का नाम हरियाली क्वीन है यहां एक कार खड़ी हुई है गेट के बाहर ट्वेंटी फोर लिखा हुआ है।

ये एक मॉल है इसके बाहर आई_एम_ओ_स इमोफ लिखा हुआ है।

दोनों पर पी_सी रखे हुए हैं अलग-अलग एक एल_ई_डी भी लगी हुई है साथ में।

इनोक्स का कोई प्रोग्राम है इसमें उसके बड़े बड़े अ बैनर से इसको डेकोरेट किया गया हुआ है।

डेकोरेट किया गया है बहोत सारे बच्चे बैठे हुए हैं।

एयरपोर्ट सांगानेर डाकघर है पोस्ट ऑफिस है ये भारतीय डाकघर इंडिया पोस्ट ऑफिस --